शाम का समय है यहां पर पेट्रोल पंप का कलर --

यहां पर एक डांस क्लास है जिसके ऊपर जेसी लोग लिखा हुआ है।

और यहाँ पर एक चैन गेट भी है जोकि ब्लैक कलर की चेन की है और यहाँ पर दीवारों का कलर क्रीम है और उसको नीचे से रेड कलर की बाउंड्री दी गई हैं।

इसके अंदर दुकान में बहोत कलर कलर के फूल रखे हुए हैं।

और झरने के नीचे कुछ लोग ठहरे हुए है जो कि बहोत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

जो वो योगा कर रहे हैं बेंडिंग पोजीशन में।

यहां पर एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

कुछ टोकरिया गिरी हुई हैं कुछ हटौड़े गिरे हुए हैं यहां पर कुछ थाली गिरी हुई है।

और यहां पर इन्हें छपरा टीनों का बनाया हुआ है।

गमलों में यहां पर पौधे लगाए हुए हैं टंगाये हुए हैं और एक दीवार में बहोत ही अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें एक लड़का--

दीवारों का कलर क्रीम कलर है और एक सॉकेट भी है यहां पर--